जमीन पर पत्थर बिछे हुएं हैं।

एक बड़ी सारी सड़क है।

ये तस्वीर एक गार्डन की है।

ये तस्वीर एक कमरे की है।

पंखा लगा है लाइटें लगी हुई हैं।

सिंधी विनायक फैमिली ढाबे की तस्वीर है।

ढाबे के अंदर लोग बैठे हुए हैं।

जिसमें एक लड़का पेड़ों के पास खड़ा हुआ है।

एक लकड़ी की मेज रखी हुई है।

यहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी हुई है।

उसके पास एक पैड लगा है।

आ के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं।

बहुत सारे जेवर रखे हैं।

ये एक बड़े सारे हॉल की तस्वीर है।

बहुत सारी तस्वीरें लटकी हुई हैं।

जिसमें हरे रंग का एक डब्बा रखा है।

जहां पर एक गाड़ी खड़ी है।

जिसको लाइटों से बहुत अच्छा--

जिसकी गुंबद पर लाल रंग किया हुआ है।

यह नजारा बहोत खूबसूरत लग रहा हे।

पे एक बोर्ड लगा है जिस पर क्राइम वन लिखा हुआ है।

यह एक बड़ा सा मैदान है।

चारों ओर इमारतें बनी हुई हैं।

यहां पर एक गिटार --

ये एक कमरा है जिसमें ये सब सामान रखा हुआ है।

और पेड़ लगे हुए हैं।

पानी का रंग भी हरा दिख रहा है।

जिसमें कुछ आदमी खड़े हुवे हैं।

जिसके आसपास काफी सारे पैड लगे हैं।

और एक हैंगर में कपड़े लटके हुए--

लकड़ी की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

यहां एक बहुत बड़ा सा घर है।